और एक दरवाजा भी लगाया गया है उस दरवाजा का रंग है काला।

और कार का फूलों से सजाया गया है फूल का रंग है हरा और पीला और गुलाबी।

और बैलून भी लगाया गया है बैलून का रंग है ब्लू लाल।

कुछ आदमी भी बैठे हुए हैं और यहां पर टेबल भी है टेबल में प्लेट और गिलास भी रखा हुआ है।

और यहां पर बहुत लोग भी है और पेड़ पौधे भी बहुत है।

और उसमें सफेद रंग से कुछ लिखा गया है और यहां पर शिशा भी लगाया गया है।

इसमें वॉल कुट्टी भी किया गया है और टाइल्स भी लगाया गया है।

और शीशे भी लगाये गये है और बहुत सारे भी मशीनें हैं मशीनें का रंग है काला और सफेद--

और बच्चे का कपड़ा का रंग है ब्लू और काला।

यह एक धान कूटने का मशीन का चित्र है और ट्रैक्टर भी है।

और यहां पर बहुत सारे धान भी हैं आ बोरा में भरा हुआ है।

और इसमें हरा रंग से कुछ लिखा गया है राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय जिला स्कूल पलामू--

और ब्लू कलर से कुछ लिखा गया है एस_बी_एल

यहां पर बहुत सारे लोग भी हैं और टेंपो और साइकिल भी है और तार ऊपर में घिचा हुआ है।